सामने दो टावर भी लगे हैं।

सामने बहोत सारा सामान पड़ा हुआ है गद्दे के डिब्बे हैं।

गेट पर सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है।

यहां पीछे शेड बनी हुई है एक साइकल भी यहां खड़ी है।

और भी बहोत सारा समान यहां रखा हुआ हैं।

आसपास बहोत सारे पोस्टर भी लगे हैं और पंखे भी--

संतरे सेब मौसम्मी और भी--

हरी भरी घास यहां लगे हुए हैं।